यहाँ पर हर रुट की गाड़ियां उपलब्ध होती हैं।

यह सड़क कर्मचारी --

उसके बाद ये रोड बनाएंगे जिससे दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र कम हो जाए।

यहां के टीचर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं।

तथा यहां पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है।

यहां के जो कर्मचारी हैं वह अच्छी कटिंग तथा --

ये एक नदी है जो दो गांव के बीच में बहती है यहां के लोग इस नदी को पार करने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं।

यहां पर किराया बहुत ही सस्ता होता है।

यहाँ की कॉफ़ी पीने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं तथा यह कॉफ़ी बहोत ही अच्छी क्वालिटी की होती है।

यहाँ पर कुछ बच्चे खेल खेलने के लिए आते हैं तथा अन्य लोग यहाँ पर खेल देखने के लिए इकठ्ठा होते ही रहते हैं।

जैसे कि हिरण शेर लोमड़ी गीदड़ भेड़िया आदि।

यहाँ पर व्यक्ति अपना काम करते हैं।

गोल्हड़ आदि के फूल जो कि कम कीमतों पर तथा अच्छी क्वालिटी के फूल होते हैं।

यहां पर एक कर्मचारी होता है जो वाहनों को खड़ा रहने के लिए उनसे पेमेंट लेता है।

यहां का जो स्टाफ है वह सफाई का विशेष ध्यान रखता है तथा जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें किताबें उपलब्ध कराता है।

गौतम बुद्ध की मूर्ति है जोकि प्राचीन काल में एक महान व्यक्ति थे।

इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी।

यह एक सैलून की दुकान है।

इन्होंने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था।